मुझे इस फोटो में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो मे बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में टाईल्स दिखाई दे रही हैं।